हमे घने ब्रक्ष लगे हुए नज़र आ रहै हैं।

साथ ही हमे रंग बिरंगे गुब्बारे नज़र आ रहें हें जो बोहत सुन्दर लग रहें हें ।

हमें एक नदी दिखाई दे रही हे नदी का पानी बहोत साफ़ नज़र आ रहा ह --

साथ ही हमे एक बड़ा खम्बा भी नज़र आ रहा है ।

नज़र आ रहा है एक बिल्डिंग भी नज़र आ रही--

हमे एक भवन नज़र आ रहा है रात्रि का समय है साथ ही एक नीले रंग का बोर्ड भवन पर दिख रहा है जिसपर एस_बी_आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है।